टेन्ट लगा हुआ है बहुत प्यारा गेट लगा हुआ है जिसपे फ्लावर्स की डेकोरेशन है अंदर बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई हैं।